सामने एक दुकान है यहाँ पे काफी बड़ा दुकान है नीचे बाइक खड़ी है और लोग भी है दुकान के अन्दर

यह एक दुकान है यहाँ पे हरेक तरह की चीज मिलती है मैगी और शैम्पू --

ये काफी बड़ी इमारते है और नीचे कुछ लोग है और--

काफी बड़ा है व्हाइट सफेद कलर से इसे पैन्ट किया गया है और अगल बगल काफी पेड़ है और उपर आसमान है यहाँ पर चिड़िया उड़ती है बैठती है।